हरी भरी घास है और पेड़ो पर पत्तियों का रंग हरा है आसमान नीले और सफ़ेद रंग का है।

सडक के किनारे दो तीन मंजिला ईमारत है चारो तरफ है पत्तियो पेड़ है पत्तियो का रंग हरा है।

चारो तरफ पंडाल में लाइटे लगी हुई है और छत पर बहुत सुंदर रस्सियाँ चमकीली लगाई हुई है।

चारो तरफ पानी में बदके है और वह सफ़ेद रंग की है और उनकी चोंच लाल है।